बाइक्स खड़ी हुई है और दुकानें लगी हुई हैं पेड़ दिख रहे हैं पेड़ो की पत्ती दिख रही हैं।

औरर और बादल दिख रहे है जो की और नीले कलर के हैं | यहाँ पर पहाड़ बहुत हरा भरा दिख रहा है जो की बहुत प्यारा दिख रहा है। बहुत सुंदर है पहाड़ |

यहाँ पर बहुत सारे जेंट्स और महिलायें हैं और यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है और बहुत सारी बिल्डिंगे --